और ये अ-अ लकड़ी का अ पलाई से कवर कर रखा है और लोहे के रोड से उस के लेयर लगाई हुई है स्पेस सीमेंट डालेंगे अभी।

ये एक अ गाडी के आयल टायर की शॉप है जहां पे बहु अ अन्दर टायर्स रखे हुए है और कुछ गाड़ी में डालने के लिए आयल होते है और बैटरी --

ये पूरा एक कारखाना है और पीछे तरफ पूरा या य अ रेत का पूरा बालू इखट्टा है।